यहाँ पर देखा जाए तो कोई आदमी सड़क पे जा रहा है पीऊँ पीलर की तरह यहाँ पर देखा जाये तो बहुत ही खतरनाक अच्छी- अच्छी दिखाई दे रही है ये यहाँ पर स्विमिंग पूल का पानी नीला दिख रहा हैं।

यहाँ पर देखा जाए तो व्हाइट कलर की कुर्सियाँ रखी हुई है जहाँ पर देखा जाए तो बहोत सारी महिलाएं कुर्सियों पे बैठी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छी कैलकुलेटर भी रखी हुई है जहाँ--

यहाँ पर देखा जाये तो एक चम्मच पर किसी ने आमलेट बना के अच्छी सी चासनी डाल रहा है यहाँ पर देखा जाता है तो अच्छी सी जाली पर दो-दो चमच्च र--

यहाँ पर देखा जाये तो आदमी टोकरी मे बैठके आते है स्विमिंग पूल में डूबते है फिर देखते हैं।

यहाँ पर टिन सेड़ दिखाय दे रहा है यहाँ कुछ पेड़ भी खड़ा है नीम का उसके बगल मे कोई निसेनी लगी हुई है यहाँ पर देखा जाय अछि सी नसेनी लगी हुई है यहाँ पर देखा जाय कुछ बाल--

और देखा जाये तो डांस कॉंपिटीशन चल रहा है जहाँ पर बच्चियाँ डांस कर रही है और गुब्बारे से अच्छी तरह से सजावट हुई है जहाँ पर अच्छी तरह से कलर हुआ है जहाँ पर त्रिरंगे के गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे --

कोई बाल्टी लगी हुई है जहां पर दिख रहा है कोई मकान भी दिख रहा है जहां पर कुछ लिखा है कि के ए आर और आगे भी कुछ दिख रहा है जहां पर देखा जाए तो गाड़ियां भी--

यहाँ पर कोई लेट के चलाने वाली मशीन रखी हुई है यहाँ पर कोई बड़ा सा जिम सेंटर है जहाँ पर कोई बैठने वाली मशीने रखी हुई हैं ।

यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई अच्छी सी ऑफिस है जहां फोर जी लिखा हुआ है जहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छा दिख रहा है जहां पर कुछ कंप्युटर भी रखे हुए हैं।

जहां पर उसके ऊपर का पेन्ट करा हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ फॉर जी लिखा हुआ है जहां पर अच्छा लग रहा है।